यह वाइट कलर का प्राइमर मार कर के इसमें टाइल्स या फिर कलर चड़ाएंगे।

और यह बिल्डिंग काफी अच्छा है। इसके सामने पार्किंग स्थल भी मोजूद है जो कि बहुत अच्छा है।